दुकान बुट और टीना की बनी है दुकानों के ऊपर बरे बरे गच्छे हैं।

रास्ते के अंत में एक गोल्डन पकोरा है।

तस्वीर को देखके लग रहा है कि यह पिकनिक या पार्टी का स्थान है। चारों तरफ हरियाली और खुली वातावरण है।

यह तस्वीर में मुझे एक बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रही है।

व्यक्तिया इधर उधर फैली हुई है यह क्रिकेट मैच हो रही है मुझे स्टंप दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक लंबी ब्रिज दिख रही है।

यह तस्वीर हरियाली और प्रकृति से भरी हुई है।

इस तस्वीर में सफेद तंबू के नीचे बहुत सारे लोग एकत्रित होकर खड़े हैं।

महिलाओं ने रंग बिरंगी कपड़े पहनी है कुछ पीले कुछ लाल कुछ नीले कुछ हरा कुछ लोग मोबाइल फोन की उपयोग कर रही है दाई की ओर एक स्कूटी दिख रही है।

मुझे बहुत से गाड़ियां दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की है और लाल रंग की भी।

स्कूल का नाम बाकिन पर्टिंस मॉडल स्कूल है।

घर के बाएं की ओर दो बसें खड़ी है।

इस तस्वीर में मुझे घर दिखाई दे रही है।

बागीचे के पेस छोटी सी सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है।

यह एक कमरे की तस्वीर है जिसके बीच में एक टेबल रखी गई है उसके चारों तरफ चेयर्स है।

सभी लड़कियां हैं इससे अंदाजा लगा सकती है कि यह गर्ल्स हॉस्टल की है।

एक लंबी रस्सी पर कपड़े सुखाया जा रहा है।

इसमें मुझे विभिन्न कक्षाओं की किताबें दिख रही है।

टेबल के ऊपर कुछ गोभी रखे हुए हैं।

ये व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त है।

कुछ लीचियों को ऊपर व्यक्ति पकड़ के है।

लाल और पीले रंग के कुर्सियों को आगे सीधे लाइन में रखी गई है।

इस तस्वीर में मुझे एक गिरजाघर दिखाई दे रही है।

एक बोर्ड भी लगी है जहां मैथमेटिक्स क्लासेस लिखी गई है।

इस तस्वीर में मुझे पुरानी लेकिन एक अच्छी साफ इमारत दिख रही है।

यह तस्वीर को देख के मुझे पता चल रहा है कि यह एक दुकान की तस्वीर है।

दुकान के दाई की ओर एक कोना में दो बकेट रखे हुए हैं और उसके ऊपर एक कार्टून है।

ऊपर की दूरी पर पहाड़ दिखाई दे रही है।